सामने एक क्रिकेट पिच बनी हुई है पिच के दोनों तरफ बड़े बड़े लोहे के डंडे लगे हैं।

कमरे के दोनों तरफ सफेद रंग की टेबल है।

एक आदमी बड़ी सी खिड़की पे वैल्डिंग का काम कर रहा है।

दीवार है दीवार के बगल में एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ है।

सामने एक दो मंजिला इमारत है ऊपरी इमारत में कांच की शीशे लगे हैं शीशे के ऊपर पुणे लिखा है।

एक लोहे का स्टैंड बना है जिसके ऊपर हरे रंग के पैकेट में कुछ फल हैं।

कुछ लोहे के सरिए लैंटर से बाहर आ रहे हैं।

स्कूटी के सामने एक टेबल रखा है टेबल के पीछे दीवाल है।

कुछ लोहे के पिलर हैं सड़क में बिजली का खंबा है।

थोड़ी ही दूर एक आदमी पत्थर के ऊपर काले रंग के कपड़े पहने बैठा है।

बहुत सारे रैक बने हुए हैं रैक के अंदर सामान रखा गया है।

कैंपिंग टेंट के थोड़ी ही दूर एक आग जल रही है।

टैंड के बाहर एक आदमी खड़ा है आसपास छोटे छोटे पेहेड़ हैं।

साइकिल के ऊपर पन्नी और गद्दा चढ़ा है साइकिल की सीट को पन्नी से कवर करके रखा गया है।

बहुत सारा सामान फैला हुआ है एक छोटी सी लाइट जल रही है।

दीवाल में एक बड़ा सा रैक है जिस में पानी की बोतलें हैं।

दीवार के बगल में एक फैन है छत के ऊपर सेंट्रल ए_सी लगा है--

बेंच को हरे और नारंगी रंग से पेंट किया गया --

सामने एक बड़ा सा स्टेज है स्टेज के नीचे दो बड़े बड़े स्पीकर है।

सामने एक सूटा सूखा पेहड़ है जिस पर एक छोटी सी चिड़िया बैठी है।

समारोह में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं मेन गेट को फूलों से सजाया गया है दो दो पिलर हैं दोनों तरफ।

टेंट के ऊपर सफेद नेट के कपड़े को डाला गया है।

मंदिर की दीवाल के बाहर एक गेट बना है दीवाल के ऊपर कुछ आकृतियां बनाई गई हैं।

जो कि आधा खुला हुआ है बगल में एक बड़ा शटर है जो कि नीचे गिरा है।

आंध्रा बैंक लिखा है जिसके ऊपर ए_टी_एम लिखा है।

कुछ बच्चे जमीन में बैठे हुए हैं उनके सामने किताब है जिसके ऊपर वे पेंटिंग कर रहे हैं।

पीछे मैडम खड़ी हैं मैडम ने मास्क लगाया है।

दो मंजिला इमारत है इमारत के बाहर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा है बोर्ड के ऊपर एक --

ए_सी का कंप्रेसर है नीचे दो कंप्रेसर हैं।

दो टेंट लगे हैं टेंट के सामने एक चटाई बिछी है।

टीन से एक बड़ा सा गोडाउन बनाया गया है।

हर रैक में साइज के हिसाब से दरवाजे में लगने वाले हैंडल को लगाया गया है।

साइड वाले खाने में लॉक लगे हैं।

एक बड़ा सा मैदान है जिसमें दो छोते - छोते तालाब बने हैं।

पानी का पार्क है जहां पे बहुत बड़ी बड़ी स्लाइडें लगी हैं।